दुर्गा पूजा जैसा लग रहा है।

अन्य देवी देवताएँ पाई गई हैं।

थोड़ी सी तस्वीर भी आ रही हैं।

और यहां पे सोफा भी रखा गया है।

कुछ पेंटिंग्स को दीवार पे भी टांगा गया है।

और ऊपर लाइटें भी जल रही हैं।

कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन जैसी जगह भी है।

बहोत सारी बैठने की जगह भी है।

ऐसे लोगो के आने-जाने के लिए जगह भी छोड़ा गया है।

और इस तस्वीर को रात में खींचा गया है।

या फिर अपना वक्त गुजारने के लिए कुछ कार्य भी कर सकते हैं।

ये चित्र किसी के घर का चित्र जैसा--

यहां पे बैठने के लिए भी--

और उस इमारत की छत पर दो लोग दिख रहे हैं।

और इन टायर्स मे फिर हवा भर के हम --

इस चित्र में बहोत सारे गेंदे के फूल हैं।

उनमें से एक गुलाब का फूल भी मौजूद है।

इस दुकान में पूरी तरह से सामान को सजाए नहीं गया है।

और आर्ट एंड ग्राफ्ट की भी चीजें इधर मौजूद है।

जहां पे बहोत सारे पत्थरों से बना हुआ पहाड़ है।

यहां पे बहोत सारे तरीके के कपड़े भी हैं।

नीचे ढेर सारे पंडित बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं।

रिसेप्शन एरिया जैसा लग रहा है।

यहां पे लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भराने आते हैं।

मोबाइल से देखते हुए चित्र बना रही है।

वह अपने दोस्त या किसी और के हाथों में शादी के लिए चित्र बना रही है।

गैस को बांटा जाता है ये कोरापुट जिला के अंतर्गत लंकापुरी गांव का चित्र है।

बहोत सारी दुकानें और घर भी है।

पर ये सारी की सारी बन्द पड़ी है।

अंदर कांच से बनी हुई दीवार की वजह से सब कुछ दिख रहा है।

मैदान बहोत ही हरियाली से भरा हुआ है।